दूध का डिब्बा है हल्दी है बिस्कुट है चॉकलेट है कैलेंडर है।

ये एक शोरूम है जिसका नाम रॉयल एनफील्ड है इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं बुलेट है।

ने एक पानी का टंकी है साम बोस एल्लो का है पोल है उसपे तारे टंगी हुई है।

बहुत तरह की मोटरसाइकिल है दो रेड कलर की है एक ब्राउन कलर की और एक ब्लैक कलर की लगी हुई है।

चेयर लगा हुआ है स्कूटी है।

सामने बहुत बड़ा घर है जिसका कलर हरा है पांच छे टोटो लगा हुआ है बहुत सारे आदमी हैं एक लेडिस सूटकेस ले कर बैठी हुई है।

आदमी है चेयर लगा हुआ है एक आदमी मोबाइल लिया हुआ है एक आदमी चश्मा पहना हुआ है।

लेडीस पिंक येल्लो कलर का साड़ी पहनी हुई है एक आदमी चश्मा पहना हुआ है।